और ये जो है वो तीनों आपस में बात कर रहे हैं।

और पीछे की तरफ कुछ सफेद खंभे दिख रही हैं वहां कुछ लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।

यहां पर एक बच्चा दो पेड़ के बीच में खड़ा है पेड़ के टहनी के ऊपर और दो पेड़ है उसके बीच में यह--

पीछे रेड कलर का बैनर लगा है होटल हाईवे के नाम से और साइड में कुछ टीन सेट की बाउंड्री बनी है।

यहां पर एक टीचर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स चेयर पे बैठे हैं और वो बोर्ड की तरफ देख रहे हैं।

और नीचे की तरफ तीन ट्रॉली बैग भी रखे हुए हैं और अलग अलग कलर के हैं सारे ही बैग ।

और वहां बहुत से लोग खड़े हैं अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी।

सामने बहुत से पेड़ है खुला ग्राउंड है जिसपे घास भी लगी हुई है।

और वहां कुछ पीला टैंक रखा हुआ है ऊपर की तरफ--

और एक व्यक्ति जो है वो लटक कर यहां पे जिमिंग कर रहे हैं।

आइट साइड में बहोत ही बड़े-बड़े पेड़ भी हैं बहोत ही सुंदर दृश्य है एक बिजली का खंभा है पास में और बहोत ही सुंदर है।

और तालाब के पीछे की तरफ भी बहोत से पेड़ लगे हुए हैं दूर की तरह--